कुछ है एक व्यक्ति माईक पकड़कर प्रार्थना कर रहा हैं ।

जिम है जिम में चार -पाँच बंदे--

ट्रेनिंग कर रहे है एक व्यक्ति अपना बॉडी दिखा रहा है वह काला कलर का टीशर्ट और पैन्ट पहना है साथी घड़ी पहना है ।